उसके साइड में घर भी है।

और कुर्सी भी है और भी है।

और फूल रेड कलर का हई।

लगता है क्या डांस कर रही है।

यह एक स्कूल है स्कूल के फील्ड मे बहुत सारा --

खेल रहा है और एक ओ साइकिल है और स्कूल बोहोत ही सुंदर है और --